और बहुत तीन चार लेडीज हैं और दो-तीन मेल हैं सो बैठ के बातें कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं।

यहाँ पे एक कथा चल रहा हैं भगवान का--

और यहाँ बहुत सारे आदमी आए हुए हैं जिसमें बहुत सारे बूढ़े औरत भी हैं बूढ़े मर्द भी हैं और लड़की सब भी हैं।

यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो कि काफी स नीचे बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं ।

गाइस यहाँ पे एक ऑफिस देखने को नजर आ रहा है जिस पे बहुत सारे थॉट्स पे लिखे हुए हैं ।

और अपने ग्लोबल के टाइम के लिखे हुए सामने एक छोटा सा पुराने जमाने का टी_वी देखने को नजर आ रहा है ।

और बहुत सारे सब्जी बाहर रखे हुए हैं और बहुत सारे सब्जी हैं बोरी में रखी गई हैं और जैसे यहाँ की धनिया देख सकते हैं टमाटर--

तो अलग-अलग साड़ी में और बीच में पानी के बीच में हरा भर प्लांट है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ।

और ऊपर एक एल_ई_डी टी_वी लगा हुआ है और नीचे उसका आ आ बोर्ड लगा हुआ है और सामने बेड है ।

गाइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक नाई का दुकान है जो कि सामने से एक आदमी फोटो क्लिक कर रहा है ।

अह दोनों सेम सेम और एक दोनों दाढ़ी दोनों की दाढ़ी बन रही है और सामने काफी सारे बैलून लगे हुए हैं ।

गाइस यहाँ एक मीटिंग हॉल देखने को नजर आ रहे हैं और सामने एक ट्रेस का एक शॉप नजर आ रहा हैं ।

गाइस यहाँ पे हम लोग को एक डैम देखने को पूल टाइप देखने को नजर आ रहा है ।

कि नीचे पानी है और पानी के तीन कलर हैं जो उस साइड से ब्लू हैं बीच में ग्रीन हैं और इस साइड से ब्लैक हैं।

जो कि उर्दू में हैं और सामने एक बाइक लगा हुआ हैं और बगल में जस्ट साइड में मोर फीज का एड दिया गया हैं।

और सामने में एक आदमी अपना काम पे लगा हुआ है और बगल में एक औरत भी अपने काम पे लगी हुई है और सामने एक कस्टमर है जो बैठे खा रहे हैं सामने एक चेयर भी लगे हुए हैं ।

गाइस यहाँ पे किराना दुकान देखने को नजर आ रहा है जहाँ के बहुत सारे ठंडे के बॉटलस वगैरह पानी के बोतल्स वगैरह --

कई सारे चॉकलेट्स एंड कॉलगेट्स वगैरह देखने को नजर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड राइट साइड में हेंकी भी नजर आ रहे हैं ।

भी ग्रीन क्लिप से टंगे हुए हैं और सामने एक पैमपर्स भी नजर आ रहे हैं जो कि पूरे लर्चे के साथ है और यहाँ पे थम --

जो कि एयरटेल की है और बाहर से शीशे लगे हुए हैं ।

काम कर रहे हो बाहर में एक दो आदमी खड़े है एक आदमी रेड टी-शर्ट पहन के खड़े हैं बगल में --

और बगल में ब्लैक कलर की थार भी खड़ी है और नीचे पत्थर के डिजाइंस वगैरह और पेंटिंग वगैरह करी गई है ।

एक ग्रे और एक रेड कलर के पेंटिंग और पेर भी हैं बगल में जो अच्छे लग रहे हैं।

और ऊपर में उसका नाम लिया गया है जो कि एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है ।

गाइज यहाँ पे हम लोग को देखने को नजर आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं ।

जो कि सारी मम मर चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि गिर नहीं सकते और ऊपर से एक डंटा आया हुआ है जिससे मछली पकड़ी गई है ।

और नीचे भी टाइल्स लगे हुए हैं बहुत सारे और बगल में क कार्ड वगैरह रखे हुए हैं ।

गाइस यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा एक महल देखने को मिल रहा है जो कि दो भाग में दो पार्ट में डिवाइड है जो बीच में दिया हुआ है गैप --

जाने के लिए और नीचे दो कार लगे हुए हैं और बाइक तीन चार बाइक्स भी लगे हुए हैं और ऊपर आसमान का कलर पूरा ब्लैक है।

और नीचे एक बैन रखा गया है और सामने मोबाइल की थोक लगाई गई है दिखाने के लिए --

जैसे कि आम हो गए सेब हो गए वाटरमेलन हो गए नींबू वगैरा हो गए और सामने एक आदमी है जोकि वहां पे सत्तू का काम--

गाइस यहाँ पे हम लोग को पुराना एक माल देखने को मिल रहा है जिसमें --

गाइस हम लोग को यहाँ सामने पे एक शॉप देखने को मिल रहा है जिस जो शॉप नीचे है ब्लैक कलर से पेंटेड है।

एंड पे लगाने के लिए और नीचे मिट्टी के सरफेस है और बगल में एक पेड़ है और सामने बालू भी रखी गई है और पेड़ की पत्ती का कलर ग्रीन है।

बीच में और उस साइड के दो तीनस वगैरा है इलेक्ट्रिक ऑटो --

बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और जस्ट उसके नीचे शॉप है जोकि बभी बंद चल रहा है बहुत सारे बाइक्स --

गाइस यहाँ पे एक आदमी है जोकि एरोप्लेन के जस्ट आगे आकर फोटो क्लिक करवा रहा है और बगल में एक औरत है।

एक लड़की है जो कि एक अपने बच्चे को रखी है और वो पर्स भी रखी हुई है अपने हाथ में और पीछे एरोप्लेन है जिसके चक्केस भी नजर आ रहे हैं हम लोग को और वो उसका --

सीढ़ी नीचे है और ट्रेन पर और एरोप्लेन पे एन_टी_ओ लिया गया है ।